वेंटिलेशन दिखाई दे रही है।

दे रहा है गेट्स दिखाई दे रहे हैंबाइक दिखाई दे रही है साइकिल दिखाई दे रही है घांस दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा-सा हॉल दिखाई दे रहा लाइट्स दिखाई दे रही है हॉल में ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है डेकोरेशन दिखाई दे रहीं सोफे दिखाई दे रहा हे।

आई.टी.आई. लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कार दिखाई दे रही है बाइक दिखाई दे रही है जेंट्स दिखाई दे --

आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहें हैं।